सामने हमें एक रोड दिखाई दे रहा है जहाँ पर किनारे के और कई सारे गाड़ियां पार्किंग पे खड़ी है और आस पास कुछ लोग भी खड़े दिखाई दे रहे है जहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंगे बन रही है और कुछ बिल्डिंगे बन चुकी है जहाँ आस पास--

सामने हमें जीवन ज्योति सेवा सदन का बोर्ड लगाया हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपर की ओर भी एक बोर्ड रखा हुआ है जहाँ पर सामने में तीन से चार साइकिलें खड़ी हैं।

सामने हमें एक गाड़ियों की शोरूम दिखाई दे रही है जिसमे कई सारी सुन्दर सुन्दर गाड़ियों रखी हुई है और कई सारे लोग गाड़ियों को देखने के लिए खड़े है और कई दिवलो में कई सारे पोस्टर भी चिपके हुए है।

वही पर एक छोटे से गड्डे में पानी भरा हुआ है और पास में ही एक लाइट भी लगी हुई है और आस-पास बहुत सूंदर हरे हरे पेड़-पौधे है।

जिसमें से बिजली उत्पन्न की जाती है और आसपास कई सारी बिल्डिंगे भी बनी हुई दिखाई दे रही है जहाँ पर बोहत सारे पेड़-पौधे भी लगे हैं।

सामने हमें कई सारी गाड़िया दिखाई दे रही है जोकि शोरूम है तो उसमे कई सारे नए-नए बाइके दिखाई दे रही है और आस-पास और भी कई सारी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं।

साइकिल रखी हुई है और आस पास भी कई सारे मकान बने हुए हैं और कुछ पेड़ पौधे भी लगे हैं।